और वो लोहे का गेट जैसा बना है।

और आदमी के पास इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं रेंच रखे हुए हैं।

लाइट्स लगी हुई है हैंग है टंगी हुई है।

और एक टीचर खड़ी हैलाइन से लोहे का डेक्स लगा हुआ है।

लेडीज खड़ी है पानी पीने के लिए एक लेडीज के हाथ में थैला है।

यहां सामने मुझे बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

फ्लावर के पॉट रखे हुए हैंआर्टिफिश --

यहां सामने मुझे बड़ा सा स्विमिंग पूल दिख रहा है।

और सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें वाइट कलर से--

यहां सामने एक गो डाउन दिख रहा है ऊपर पूरा ऊपर सिंज तकस्टील का ढका हुआ है।

और जो लाइट्स टंगी हुई हैंग ए--

और बहोत सारे अ कार खड़ी है कुछ टूटी कार है कुछ सही कार है गैराज लग रहा है ये फॅन लगा हुआ ऊपर --

ऊपर आसमान दिख रहा है बादल दिख रहा है।

घास दिख रहा है दो टेंट लगे हुए हैं।

ब्लू और रेड कलर के एक ऑरेंज और ग्रीन कलर के पेड़ है।

यहा सामने मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है।

हमने वॉल पे टेबल रखा हुआ है सोफे रखे हुए है।

छोटे छोटे बहोत सारे कार्टून के बॉक्स रखे हुए हैं पीछे--

सामने मुझे सड़क दिख रही है सड़क पे--

बहुत सारे लोग हैं और गाड़ियां खड़ी हैं बाइक खड़ा है।

सूखे पत्ते पड़े हुए हैं कचड़ा पड़ा हुआ है।

बड़े-बड़े पेड़ है एक लड़का खड़ा है रेड कलर का--

सामने मुझे और लकड़ी का बना हुआ रैक दिख रहा है रैक में पूरे में सामान भरा हुआ है।

सामने मुझे ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में घांस है।

यहां सामने बड़ा सा हॉल है ऊपर टीन का घेरा गया है बहुत सारे टेबल रखे हुए हैं।

बहुत सारी चेयर रखी हुई है लाइंस उसमें बहुत सारी--

आस पास में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं पीछे ग्राउंड दिख रहा ।

रेड कलर का जिस पे लिखा हुआ है श्रीमती सरस्वती देव बिहारी ला --

गाड़ियां खड़ी हैं सामने बिल्डिंगें दिख रही हैं।

वाशिंग मशीन रखी हुई है जिसके ऊपर बैनर लगे हुए हैं।

बहुत सारे वायर लगे हुए हैं ब्लैक कलर के--

ब्लू कलर का गिटार है रेड कलर का ब्लॅक कलर मल्टीपल कलर का गिटार है।

सामने मुझे एक हॉल दिख रहा है हॉल में बलून लगे हुए हैं ऊपर--

और रेलिंग बनी हुई है लोहे की।

अ पहाड़ दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है पेड़ की टहैनियां दिख रही हैं।

सामने मुझे दुकानें दिख रही हैं और अ बड़ा सा बैनर दिख रहा है।

ऊपर टेंट जैसा लगा हुआ है बहुत सारे बलून लगे हुए हैं टेंट में कर्टेन से सजाया गया है लकड़ी के बांस दिख रहे हैं।

और कुछ जमीन पे पत्ते पत्ते पड़े हुए हैं कचड़ा जैसा रखा हुआ है।